ये एक रेस्टोरेंट की फोटो है जहां पे टेबुल जो वाइट कलर का दिख रहा है टेबुल पे एक प्लेट है बड़ा सा जो ब्लैक कलर का है।

और साइड में दीवार पे एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें कुछ तस्वीरें बनी हुई है।